इस पिक्चर के अंदर हमे एक बिल्डिंग के अंदर ग्रीन कलर के फर्श वाला एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।

यह फोटो वर्ल्ड ट्रेड पार्क का है जिसमें पीछे की तरफ बहोत ही शानदार बिल्डिंग नजर आ रही है।

क्रीम की बोटल का कलर येलो कलर का है साथ ही पर्पल और वाइट कलर की बॉटल्स भी यहां पर हमको दिखाई दे रही है।

यह एक मछली मार्केट का दृश्य है जिसमें बहुत सारे मछली विक्रेता अपने सामने मछलियां लेकर बैठे है।

साथ ही यहां पे कार को रिपेयर करने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं।

जिसमें अपने रेगुलर यूज के सामान यहां पे बेचे जाते हैं।

और एक रेड कलर की साइकिल भी है यहां पे गार्ड और बहुत सारे स्टूडेंट भी मुझे साफ नजर आ रहे हैं।

यह एक रोड का नजारा है जिसमें गाड़ियां बस इत्यादि भी चल रही है यहां पर बहुत सारे लोग भी --

साथी बहुत सारे लोग भी है जो की एक लोहे के टेंट के नीचे अपना काम कर रहे हैं।

इस फोटो के अंदर मुझे एक पार्क का दृश्य दिख रहा है जिसमें पानी वाला पॉउन्चर भी है साथी एक बहुत बड़ी स्टेचू मूर्ति भी दिख रही है।